और तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े बल्ब लगे हुए हैं।

तस्वीर के अंदर हमें भीड़ दिखाई दे रही है।

हमें बिज अ तार नजर आ रहे हैं बिजली के।

और हमें जाली दिखाई दे रही हैं उसके अंदर हरी-हरी घास।

तस्वीर के अंदर हमें अ दीवार दिखाई दे रही है वहाँ एक आदमी बैठा है।

अंदर हमें एक घर बना हुआ गुलाबी मकान दिखाई दे रहा है।

हमें दिखाई दे रहा है सफेद दीवारें हैं सामने और पंखे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

कारें और हमें टू व्हीलर --

हमें दिखाई दे रहा है टाइल्स लगे हैं जमीन में और--

सामने कांच के अंद उस तरफ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं आदमी हैं।

तस्वीर के अंदर हमें बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं।

एक आदमी का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा।

हमें तस्वीर के अंदर दिखाई दे रही है जाली लगी हुई है।

और गेट खुले हुए हैं हमें डैम के--

इस तस्वीर में हमें हरे-हरे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

कांच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक आदमी खड़ा है।

बहोत सारा सामान रखा दिखाई दे रहा है सामने--

और बाईकें हमें अह खड़ी हुई गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं।

और गमले हमें लगे दिखाई दे रहे हैं।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

बल्ब लाइटें लगी हुई नजर आ रही है।

और वहां भी एक आदमी हमें दिखाई दे रहा है।

और हमें खंभे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

हमें जीने नजर आ रहे हैं सीढ़ियां बनी हैं।

इस तस्वीर में हमें हरे हरी घास--

और हरे-हरे वहाँ पर पत्ते लगे हुए नजर आ रहे हैं।

बिजली का तार नजर नज़र आ रहा है हरे-हरे पेड़ लगे हैं।